छ: लोग दिखाई दे रहे है वो सब बास्केट दिखाई दे रही है सामान दिखाई दे रहे है और भी बहुत यहाँ पे कुछ पो- रंग बिरंगी पोलिथीन दिखाई दे रही हैं बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।